बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही नदी का पानी नीचे कूदता हुआ दिखा रहा है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे है पहाड मे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है पौधे हरे रंग के दिखाई दे रहे है और पत्थर काले दिखाई दे रहे है।

और कुछ छोटा छोटा घास भी दिखाई दे रहा है आसमान सफेद दिखाई दे रहा है।